टेबल पे रखे हुए हैं सारे सामान।

बैठे हैं सभी का मुंह ढका हुआ है.

लाइट भी जल रही है झालर बत्ती लगी हुई है खूब सजी है जैसे नया दुकान हो.

कुछ बन गया है और कुछ बाकी है जिसमें अभी काम लगा है।

बोरा रखा हुआ है बालू भर के--

ने पीला कलर का है वो--

एक मेला है मेला मे ढेर सारे लोग आये हुए हैं रंग बे रंगी कपडे पहने हुए हैं.

एक घड़ी है गणेश जी का मूर्ति लगा हुआ है।

ढेर सारा ज़मीन पे बिखरा--

यह एक ऑफिस हे ऑफिस मे एक गार्ड बैठे हुई हे कुर्सी पर और टेबल पर.